यह एक खूबसूरत दृश्य है यहाँ पर जाने का रास्ता भी है और यहाँ पहाड़ भी नजर आ रहा है यहाँ आसमान काले है यहाँ पेड़-पौधे बहुत सारे है रंग-बिरंगे --

यहाँ एक सड़क है यहाँ पे एक मोटरसाइकिल भी बहुत सारे है यहाँ पे ऑटो भी लगा हुआ है एक बैंक है | यहाँ बहुत सारे शॉप है यहाँ पर यहां पे बहुत सारे दुकान भी है और यहां पे आसमान भी नजर भी आ रहे है और यहाँ पे तार है जो बिजली के है।